कुछ फूल व्हाइट कलर के है कुछ रेड कलर के है तो कुछ फटारंगी कलर के है कुरिले कलर के है दीवालों का रंग भी पीला- सा ही है और जो --

यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुई है बिच मे कुछ नसैनी सिडया सी रखी हुई है पार्क में कुछ जगह ज्यादा गास हैतो कुछ जगह कुछ जगह गास नहीं है कुछ लोग पार्क में बेठे हुए भी है

बाइक से बैठ कर जा रहे हैं और पेड़ो की टहनियाँ भी दिखाई दे रही हैं जो उ और सामने की तरफ भी पेड़ लगे हुए हैं।

नीचे की तरफ जिनमे पोस्टर लगे हुए हैं सामने एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है दुकानों के सामने रेलिंग लगी है। एक बैंक का पोस्ट भी लगा हु--

फर्नीचर है जिसमे बहुत सारा सामान रखा हुआ है माँ शेरावाली की धूप बत्तीया रखी हुई है कुछ मैगीया मेहदिया के पैकेटस भी रखे हुए है फर्नीचर --